इस जगह पर एक झरना दिखाई दे रहा है।

शॉप मे कई सारा समान भी दिखाई दे रहा है।

इस जगह पर कई सारे मटके दिखाई दे रहे हैं।

इस जगह पर लोहे के गेट दिखाई दे रहे है।

इस जगह पर कही सारे पुरुष व महिलाएं दिख रही है।

इस जगह पर कई सारे पुरुष और महिलाएं दिख रहे है।

किचन में गैस चुला भी रखा हुआ दिख रहा है।